यहां एक रैली निकाल रही है यहां पर बहुत सारे आर्मी पुलिस है यहां पर भेद लगी हुई है यहां राइट साइड बहुत सारे पेड़ है जिसमें सिर्फ डाली दिख रही है राइट साइड से--

यहां एक बच्चों के टॉयज की दुकान यहां पर ढोलक सब चीज मिलती है जो की एक अंकल ले रहे है यहां पर मेले जैसे दुकान लगे यहां पर लाइट्स लगी है यहां पर बच्चों के बहुत सारे खिलौने मिलते है।

यहां एक दो-तीन भोंपू बज रहे हैं यहां पर एक डी.जे जैसा फूल लगा हुआ यहां पर कुछ रैली निकाल रही है राइट साइड बहुत सारे जगह हैरोड भी बने हुए हैं।